बिल्डिंग के बाहर रास्ते पर कुछ वाहन खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कु पेड़ पौधे-लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

प्रकार के फूलों से सजाया गया है स्टेज पर कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं स्टेज पर--

यहाँ पर एक छोटी सी दुकान दिखाई दे रही है दुकान मे बहोत सारे--

हुआ है और कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर लाइ लगी हुई है और सामने एक घड़ी दिखाई दे रही है।

जो कि बंद है और एक मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है और सड़क खली दिखाई दे रही है जो कि बंद है।

हुई है और सामने छोटे-छोटे झूले दिख रहे है और हरा-भरा पेड़ भी दिखाई दे रहा है और सामने छोटे-छोटे घर दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हमे बस और ऑटो रिक्क्षा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे है।

दुकान के अंदर इन सभी चीजों से संबंधित सामान रखा हुआ है और दुकान के बाहर दो कुर्सियां रखी हुई दिख रही--